अं उस स्टैचू ने लाल कलर का एक टी_शर्ट पहना हुआ है टी_शर्ट के अंदर लिखा है--

फूल भी दिख रहा है और फूलों के पीछे पेड़ बड़े -बड़े पेड़ भी दिख रहे है।

जब ये पूरा बन जाएगा तो काफी सुंदर लगेगा इसको पेंट भी करने चाहिए तो यह काफी और ज्यादा अच्छा लगेगा ।

एक लगता है एक थाने की जगह है जहाँ पर तीन बंदे खड़े हुए है और एक--

दो आदमी पहले से ही लगता है इसीलिए ये आदमी अभी खड़ा हुआ है लगता है बाद में--

और अभी तक लगता है कोई भी इसके अंदर आया नहीं है और वहाँ पर एक फूल भी गिर टेबल के--

और एक आदमी पिंक टी शर्ट में खड़ा हुआ है।

ये एक समुंदर है समुंदर के अंदर दो बंदे बोट चला रहे है समुं--